एक मॉल है जो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी दीवाल हरे रंग की और काले रंग की हैं। इसकी फर्श हरे रंग की है।

इसके अंदर बहुत सारे गट्टे पड़े हुए हैं और बहुत सारे हँगर है जिन पे कुछ कपड़े लगे हुए हैं।

और एक चार्जिंग बोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर एक तराजू रक्खा हुआ है | एक मीटर लगा हुआ है और कुछ सामान है | इसका रंग भूरा और सफ़ेद है।

तीन बच्चे कुछ आपस में पढ़ रहे हैं। इसके बीचो बीच में एक मेज पड़ी हुई है जो भूरे और सफेद रंग की है। यहाँ पे कुर्सी बड़ी है जो लाल रंग की है। उस कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ कुछ लिख रहा है।

आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर नवैया है जो पीले रंग की है उसने नव्या पर दो आदमी खड़े हुए हैं यह कुछ यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं।

हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर फूलों से सजी ब बोहोत सारी मालाऐ रखी हुई हैं। यहां पे एक आदमी उमं बैठा हुआ है।

इन ये सीढ़िया इनकी काले रंग की हैं। इसका शटर काले रंग का है जो लोहे का बना हुआ है।

यह दरगाह है जो बहुत ही बड़ा है और काफी खूबसूरत है इसके अंदर ढेर सारी लाइटे जल रही हैं और कैमरे भी चल रहे हैंऔर पंखे भी इसके बाहर।